इसमें कोई मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है। क्रॉस पर जीसस का स्टेच्यू दिखाई दे रहा है। चर्च की सीलिंग सफ़ेद है। चर्च की दीवार नीली और पिंक है। जीसस का बैनर साईड में लगा हुआ है।

एक कॉलोनी है यहां एक सिविल इंजीनियर काम कर रहा है। यहां काफी सारी बिल्डिंग बनी हुई है। यहां कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। यहां सफेद स्कूटी और काली बाइक खड़ी हुई है।

यहां एक पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है। यहां हरे कलर की रेलिंग लगी हुई है। यहां कांच का गेट बना हुआ है। यहां हरे कलर की पतियां दिखाई दे रही हैं।

सलून में लाइट लगीं हुई हैं। सलून के बाहर एक लड़का बैठकर मोबाइल चला रहा है।

टूरिस्ट जगह है काफी सुंदर लग रही है वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद का बोर्ड लगा हुआ है।

बिल्डिंग है। बिल्डिंग काफी सुंदर लग रही है। बिल्डिंग की सीडियों पे लाइटस लगे हुए हैं।

जगह कन्स्ट्रक्शन वाली जगह है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पेहने हुआ है।

यह एक रोड है। रोड पर सफेद कलर की कार खड़ी हुई है। कार के बाजू मे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। कार के आगे कुछ और कारे खड़ी हुई हैं।

एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में काफी सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। यहां दीवारों पर काफी सारे बोर्ड लगे हुए हैं।